यहाँ पर एक आदमी भी आया हुआ है अपने रिपोर्ट लेकर यहाँ पर खु ब्लर चा ब्लड चेक किया जाता है यहाँ पर बहुत ही --

यहाँ पर आटा चावल दाल चीनी तेल रिफाइन अनेक प्रकार की समान रखे जाते हैं यह दूकान में --

यह एक हम्म इस मेल की दिवाल बनाई गई है। यह दिवाल में बोहोत ही सुंदर प्रतिमे की चित्र बनाई गई है।

से मिलाइ गई है यहां पर यह ढलाई किए जाएगी यहां पर --